यह एक मांडा है इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी कर राखी है।

वो बहुत आदमी बैठे है यह पर कुर्सियां है टेबल है वो बोत अच्छा होटल है ये।

यह एक सिविंग फुल है सिविंग फुल है यह पर बहुत अच्छी सजावट कर रखी है।

यहाँ पर गाड़ी की सर्विस हो रही है।

और वह पे आदमी जा रहे है लाइन में लग रहा है बहुत सारे आदमी है।

वहां पर भैंस है और भैंस का बच्चा है यह एक टेंन की छान है।

और यहाँ पे मोटरसाइकिल जहा रही है पेड़ पौधे है और यहाँ पर पेट्रोल पम्प पर तेल गलाने आते है।

और यहाँ पर अलग अलग तरह का मुठिया है खिलोने है और यह पर कैंटीन पर आदमी बैठा है खड़ा है।